बहुत सारे खंबे और लाइट लगी हुई दिख रही है।

जो की जिनमे सामान रखा हुआ दिख रहा है दो आदमी दिखाई दे रहे है एक ब्लू कलर की टी-शर्ट पेहने हुए एक रेड कलर की टी-शर्ट पेहने हुए है ।

और दो कॉफी उम्म के कप रखे हुए है एक बोटल रखी हुई है।